अ एन एच.डी.एफ.सी. का फुल फॉर्म होता है वो मुझे--

यहाँ पर कपड़े को धुलाया ये सब किया जाता है।

औ माँ सीता करके एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बी है और आ इस पारलर का नाम है ए वन एन जे बी पार्लर पता नहीं अजनवी पार्लर --